ये एक नर्सरी का सेक्शन है।

और यहां पर एक हेड वाश चेयर भी है और दो हे हेयर कट के लिए चेयर्स है।

यह एक बाईसाइकिल है।

हॉस्पिटल के सामने कार्स और बाइक्स खड़ी हैं।

यह एक बिल्डिंग के बाहर का एरिया है यहां बहुत हरियाली है।

यहां पर कुछ कप्स और कॉफी मशीन हैं।